यहाँ देखे तो ये यूनिवर्सिटी है इधर और लाल कलर है और अनेक पेड़ भी है अ- और इधर देखे तो लाल कलर कार भी है और दो विद्यार्थी है और--

इस इमेज मे एक व्यक्ति बैठकर रखे है और बाजूमे अ पिज़्ज़ा का फोटो है और बाजूमे एक केएफसी प्रमुख व्यक्ति का फोटो भी है।

देखे तो अपने को शॉपिंग मॉल है इधर और नीचे एक व्यक्ति बैठके रहे है।

ये देखो अपने को यह अह ग क्लासरूम है और क्लास के सर अह बोर्ड पे लिखे है और अनेक लड़को भी है लड़की ही है और ऊपर-- .

यहाँ मे कोई गव्हरमेन्ट कॉलेज है बाहर मे अनेक गाड़ी है और अ- आदमी है बाहर मे कार गाड़ी है और एक ब-छोटी बस है।

अ बॅनर है और एक एक वॉशरूम है एक-एक टिकट काउन्टरस भी है उधर देखे तो कुर्सी भी है लाल कलर मे अंदर लाल कलर मे है।

ये कॉलेज है गव्हर्मेंट कॉलेज अ ऑफ इंजिनीयरिंग अ औरंगाबाद--